में एक टेवल है और एक बैग धरा है।

और एक इसके सामने एक कूड़े दान की बाल्टी है।

और एक लेडिज डॉक्टर है इनमें।

और एक लकड़ी का स्टूल धरा हुआ है और कुर्सी है।

और परे कुर्सी पे दो जने बैठे है।

और इसके दौरे एक लोहे की बड़ी सी रेलिंग भी लग रही है।

और एक इसके बरबर में एक घड़ी लगी हुई है।

यह एक छोले भटूरे की दुकान है।

और एक जिन्ने के नीचे बैटरा और एक कुर्सी भी है।

लोहे के बड़े बड़े कोलंबि है।

और एक बराबर में जिम पेडी है।

और इसके धुरे एक दीवाल है जे पे सफेद पेंट हो या--

और गेंदे के फूल की ड्रोकेशन की है।

और गुब्बारे सफेद पहले लगे हुए है।

और बहुत से आदमी है।

और एक कार और एक मोटरसाइकल खड़ी है।

यहां दो लेडीज जा रही है।

डमरू भी है और लकड़ी के सांप भी पड़े हुए है।

यह एक खेलने का मैदान भी है।

यह एक बच्चों की ये खेलने कूदने की चीज है।

लकड़ी की बैठने की सीट दो धरी भी है।

और मंदिर के ऊपर बहुत तार है।

ये नींव भरे जा रही है।

और इसके ऊपर तार जा रहे हैं और इसके बरबर में एक लोहे का खंबा है।